रास्ता है रास्ता के दोनों तरफ छोटे छोटे घास वाले रास्ते बने हुए यहा पे एक घर भी बना हुआ है जो लाल रंग के जिसपे काँच लगे हुए है और ऊपर से ऊपर --

बड़ासा पेट्रोल पम्प है जिसका जिस जिसको चारो तरफ से टेल्स लगाया गया है पेट्रोल पम्प का कलर सफ़ेद और लाल रंग का जिसके बाहर एक लाल रंग और सफ़ेद रंग का एक बैनर भी लगा हुआ साथ ही --

फूल की दुकान है जो की बहुत से रंग बिरंगे फूल लगे हुए है फूल दुकान के पास एक फल का दुकान भी बनाया गया है यहा पे सफ़ेद फूल की माला बनी हुई।

बाखरिया है यहा पे जो खाना खा रही है। पानी पी रही है। यहा बोहोत सारे सफ़ेद बकरिया बहुत सारे लाल बकरिया सफ़ेद-काली बकरिया जो सिर्फ लाल बकरिया यहा पे है।

एक जंगल है जंगल मे एक आदमी एक फूल को पकड़ के फोटो खींच रहा है जंगल मे बहुत घने-घने जंगल है यहा पे झाड़िया भी है यहा पे कुछ सूखे पेड़--

तो मुर्गी दिखाई दे रही है मुर्गी के पास मे यहाँ पे यहाँ पे एक फ्लोवर पोट रखा हुआ जिसे पेड़ लगाए गए साथ ही यहाँ पे स्टील के गमले में भी पेड़ लगाया गया है यहाँ पे तीन मुर्गी--